कुछ घुंघरू भी और एक पियानो भी रखा हुआ है।

है यहां पर एक पोस्टर लगा हुआ है।

यहां पर बहोत सारी मशीनें भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर कुछ पत्थर के टुकड़े भी नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है उस--

बहोत सारे किताबें और कुछ पेपर रखे हुए--

यहां पर एक पंखा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक जाल भी नजर आ रहा है।

और यहाँ पर कुछ दीवार भी दिखाई दे रही है यह एक हरा मैदान है।

यहां पर कुछ फूल पत्ते और यहां पर एक ला दो से तीन लाइट दिखाई पड़ रही है।

यह एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

और एक पत्थर की दीवार जिस पर कुछ लिखा भी दिखाई दे रहा है।

उसके सामने एक रोड भी नजर आ रहा है।

यहां पर कीवी केले और मौसमी और एक क्रेट दिखाई दे रही है।

यहां पर एक दो बाल्टी भी नजर आ रही है।

यहां पर तीन से चार व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक लैपटॉप और एक मशीन और तीन बोर्ड नजर आ रहे हैं।

यहां पर जूते और यहां पर बहुत सारे गमले और यहां पर कुछ डॉल भी रखी हुई है।

यह एक कोचिंग सेंटर दिखाई पड़ता है।

यह एक शूटिंग का मैदान दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक पाइप और एक शटर और शी-शी-शीशों के गेट भी दिखाई दे रहे हैं।

और अलग अलग पेंटिंग भी दिखाई दे रही है।